इस तस्वीर में हमें यह दिखाई दे रहा है यहां पर एक गेट है जोकि लोहे का है।

अंदर एक कुंआ भी है और ये चारों तरफ से वाल का घेरा हुआ है।

यहां पे दो बोतल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

कार बगल में दो आदमी है।

यहां पे एक पंखा भी है।

सामने ही एक दरवाजा है।

सामने गमले गमले में बहुत सारा फूल लगाया हुआ हैं।

इस तस्वीर में हमें ये दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

नदी के उस पार पहाड़ दिखाई दे रहा है।

भी लिखा हुआ है काउंटर एंड पार्सल ऑफिस --

फोटो में यह देख पा रहे हैं कि यह बहुत बड़ा रोड है।

यहां पे एक रिक्शा वाला है और बहुत सारे आदमी है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि यह एक गैरेज है।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

और इधर एक मैडम है।

ये एक हार्डवेयर का दुकान का अंदर का फोटो है।

ये दुकान में बहुत सारे सामान है जिसमें हमें एक हरा रंग का सिंटेक्स दिख रहा है।

यहां पे हम लोग को सिकड़ी भी दिख रहा है। और यहां पे बहोत सारा पाइप भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे बाइक और स्कूटी --

दूर में हमें एक ब्लू कलर का सिंटेक्स भी दिख रहा है।

यहां पे एक वॉल और घर भी दिखाई दे रहा है जो कि पीला कलर का है।

और यहां पे दो आदमी है जो कि इसे देख रहा है।

यहां की बोगी बहुत सारा आदमी आदमी है।

यह एक ए_टी_एम है जोकि आदमी सब पैसा निकाल रहा है।

ये पंजाब नेशनल बैंक है।

यहां पे एक टेम्पु भी है।

और यहां पे एक पुलिस भी है।

ये एक हिंदू का मंदिर है।

जो कि अभी बंद है।

बोर्ड पे लिखा हुआ है टेक्नो कार्ट मोबाइल सेल एंड सर्विस ऑल एक्सेसरीज ।

लाइटिंग भी बहुत सारा लगा हुआ है यहां पे।

तस्वीर में हम यह देख रहे हैं कि यह बहुत बड़ा मंदिर है।

एक खेत है जोकि बहुत सारे बकरिया गाय है और घर है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है यह एक एलेक्ट्रिक का दुकान है और यहाँ पर एलेक्ट्रिक का बहुत सामान है।

तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है ये एक पर्दे का दुकान है।

तीन प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है और इसके बगल में बहुत बड़ा सिरी है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है ये एक स्कूल है और ये वाइट और ब्लू कलर में है।

उसके आगे एक पानी का पाइप भी है।

गार्डन के चारों तरफ एक दीवार बनाया हुआ है जिसमें सफेद और नीला रंग का रंग लगाया हुआ है।

उसके पीछे बहुत सारे बिल्डिंग है और उसके साइड में एक टॉवर भी है।